बहुत सारा आदमी है इसमें।

आसमान ब्लू कलर का दिख रहा--

यहां बहुत बड़ा जगह है।

बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है खड़ा है।

दो ठो कुर्सी रखा हुआ है।

पूरा पेड़ ओड़ दिख रहा है आदमी भी दिख रहा है।

पानी एक दम बह रहा है और बहुत सारा आदमी भी दिख रहा है।

ये फुटबॉल खेलने का बहुत सा बड़ा जगह है।

बैठने का बोरा भी रखा हुआ है।

ये बहुत बड़ा टाटा मोटर्स का दुकान है।

नीचे में ब्लू कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

मग भी रखा हुआ बर्तन भी है।

इनमें बहुत सारा पेड़ भी है और ऊपर में वाइट कलर का रा रोड बना हुआ है।

व्हाइट कलर का दीवाल दिख रहा है ब्लू कलर का दीवाल दिख रहा है।

बहुत बड़ा सा घर है।

पानी का फिल्टर भी रखा हुआ है।

बोर्ड लिखा लगा हुआ है सुभाष चंद्र बोस हम्म है और उसमें हम्म दुर्गा मां का फोटो भी है।

लेडीज कॉर्नर का दुकान है।

दीवाल साइड में दीवाल में दिख रहा है।

टी_वी भी दिख रहा है।

पीछे में बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है।

मिक्सी भी रखा हुआ है।